टमाटर दिखाई दे रहे है| टमाटर कुछ कुछ लाल और कुछ कुछ केलो दिखाई दे रहे है| कुछ कुछ कच्चे टमाटर दिखाई देने | किसी किसी पर डाग भी दिखाई दे रहा है| और इसी के साथ नीचे वह एक टोकरी के अंदर दिखाई दे रहा है।

आस-पास छोटे-छोटे पौधें और फूल जैसे भी नजर आ रहे हैं| कांटे के पेड़ के कारण यह तस्वीर काफी ज्यादा--

जिराफ है जिराफ के बच्चे और जिराफ दोनों साथ में है| जिराफ के साथ साथ यहॉं मुझे हरे भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे है जिनके पीछे एक दीवाल दिखाई दे रही है| हरियाली भी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है।

मुझे एक तालाब सा नजर आ रहा है| तालाब के आस-पास काफी हरियाली नजर आ रही है| बीच में टापू जैसा भी नजर आ रहा है| ऊपर का मौसम काफी जैसा साफ नजर आ रहा है।

मुझे दो हिरण दिखाई दे रही है| जो एक हिरण बड़ी है और एक हिरण का बच्चा है।

दूर दूर भी और एक हिरण दिखाई दे रही है| हरियाली का भी अच्‍छा नजारा है और पेड़ पौधें भी काफी अच्छे लगे हुए है| यहाँ पर हरे हरे पेड़ लगे हुए है कुछ मुरझाए हुए पेड़ भी है।

बिरयानी की थाली नजर आ रही है जिसके अंदर एक फीस नजर आ रहा है और राइस भी नजर आ रहे है| राइस का कलर व्हाइट और ऑरेंज ब्राऊन कलर का नजर आ रहा है| एक ग्लास की नजर आ रहा है और एक फैन भी नजर आ रहा है।

उसी के पास मुझे आइस क्रीम की एक मशीन नजर आ रही है जिसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है| और उसके पीछे मुझे काफी सारे मुझे जूस की बोतले भी नजर आ रही है| कोको कोले का एक डब्बा भी नजर आ रहा है।

मुझे एक वैन सी नजर आ रही है जिस वैन का कलर मुझे ओरंज और वाईट कलर का आ रहा है| वैन के ऊपर परफेक्ट लिखा हुआ आ रहा है| वैन के ऊपर भी कांच के अंदर एक पर्दे से जो नजर आ रहे है।